यहां दुकान बनाया जा रहा है।

ये एक वाटर पार्क का दृश्य लग रहा है।

साइड में मोबाइल रिपेयरिंग लिखा हुआ है।

यहां बहुत सारे मोबाइल दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्क जैसा दिख रहा है पार्क एक वॉल से घेरा गया है यहां बच्चे खेल रहे हैं।

ए एक दुकान लग रहा है यहां आदमी कपड़े देख रहे हैं।

यहां लड़कियों के कपड़े दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे बाइक्स या गाड़ी खड़े हैं यहां फूलों का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत लोग दिखाई दे रहा है पीछे एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है।

ये एक कपड़े का दुकान लग रहा है यहां लड़कियों के कपड़े दिखाई दे रहा है।

यहां उस तरफ जंगल भी दिखाई दे रहा है पानी गंदा लग रहा है।

यहां बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है।

ये मूर्तियां सेल्फ में रखे गए हैं ये मूर्तियों को प्लास्टिक से रेप किया गया है।

ये एक वेटिंग एरिया जैसा दिख रहा है।

ये एक दुकान लग रहा है ये मां चंचला ड्राई फ्रूट्स का दुकान है।